वे जो इयरफोन लगाया हुआ लाल कलर का भी दिखाई दे रही है।

ये वो तीनों की फेस जो ब्लर किया गया है।

बैठने वाला भी ब्लैक कलर का है।

इस पिक्चर में मुझे एक शोरूम दिखाई दे रही है।

उसकी अंदर में मुझे लड़की का पिक्चर भी दिखाई दे रहा है उसका फेस ब्लर करके है।

ये इस घर के पीछे में मुझे एक बड़ा सा टावर पोल दिखाई मिल रही है।

और इस घर की कलर जो ग्रीन कलर में है आधा अधि।

ये इस घर को टीना से लगाया हुआ है।

इस पिक्चर में मुझे एक छोटा सा घर दिखाई दे रहा है।

और मुझे यहां में बहोत सारा पेड़ लोग भी दिखाई मिल रही है।

इस पिक्चर में मुझे एक ग्रीन कलर का घर डिखाई मिल रही है।

ये यहां में मुझे एक गाड़ी से अनलोडिंग करते हुए सामान भी दिखाई मिल रही है।

मुझे फिर आसमान भी सफेद रंग में दिखाई दे रही है।

यहां में मुझे बहोत बड़ा सा जगह दिखाई दे रही है।

और यहां में मुझे चार और टेबल भी दिखाई दे रही है।

इस पिक्चर में मुझे एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है।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

और इस घर की साइड साइड में बहुत सारा खिड़कियां भी लगाया गया है।

घर के बाहर में बहोत सारा पेड़ लोग भी है।

ये यहां में मुझे फेंसिंग जो लोहा से बनाया गया है।

ये यहां में घर के पास में एक नोटिस बोर्ड भी लगाया गया है नमसाइ का।

मुझे इस रूम की अंदर में एक सी_सी_टी_वी वा व्हाइट कलर का दिखाई दे रही है।

और इस रूम के अंदर एक चेयर दिखाई दे रहा है वहां में लैपटॉप देख रखा हुआ है।

और फिर यहां हमें आधा आधी वाला दीवार भी दिखाई दे रही है।

इस पिक्चर में मुझे बहोत बड़ा बड़ा घर दिखाई मिल रही है।

यहां हमें मुझे एक शाम भी दिखाई दे रहा है येल्लो से--

इस पिक्चर में मुझे एक गेट दिखाई दे रहा है।

यहां में मुझे आईना का रिफ्लेक्शन में एक लड़का भी दिखाई दे रहा है लड़की भी दिखाई दे रही बच्चा भी दिखाई दे रहा है।

इस दुकान के ऊपर में वी_आई_पी लिखा हुआ भी मिल दिखाई मिल रही है।

और इस घर के बाहर में मूर्तियां भी लाइन से बनाया हुआ है।

इस पिक्चर में एक बच्चा दिखाई दे रहा है वो पानी डाल रही है।

यहां मैं मुझे बहुत सारा प्लान रूपी दिखाई दे रहा है।